माछु त भात मा जी खांदा छन इ खाणो मा बहोत स्वादिश्ट होंदा छन माछु पर कांडा भी होंदा छन।

कुछ अस्त्र छन दिखेण लग्यां यख फणी माता रानी पर फूलों की माला छा पैराईं यख पिछाड़ी मा जी लाल रंग छ होयुं कुछ खिड़की छ दिखेण लगीं बालकनी भी छा दिखेण लगीं।

यख मा जी गेहूं सुख छन सामने मा जी कुछ मकान छन वे पर टीन का छप्पर लग्यां छन यख मा जी एक बिजली कू खंभा भी छ बिजली का तार छन।